यह एक चित्र है और इस चित्र में एक नदी है यह नदी बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है नदी के ऊपर एक लोहे की पि --

और इसमें कई सारे गन टैंक दिखाई दे रहे है। जिसमें कुछ सैनिक टैंक के ऊपर खरे हैं और कुछ सैनिक नीचे जमीन पे सो गए हैं। सभी सैनिक के हाथ में गन दिखाई दे रहा है और कुछ के हाथ में बम भी लगे हुए है।

बैंक के पास में एक वृक्ष है और वृक्ष के जस्ट कुछ ही दूरी पे एक केले की भी वृक्ष है यह केला का पेड़ है।

यह ब्रिज एक नदी के ऊपर बनायीं गयी है और ब्रिज के ऊपर एक लड़का खड़ा दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक चित्र है और इस चित्र में एक बोहोत ही बरी - बरी पत्थर एवं पहाड़ दिखाई दे --